एक आदमी है जिसके हाथ में हरी पाइप है जो पानी से फर्श को धो रहा है और पीछे बहुत सारे हरे पेड़ लगे हैं।

मंदिर है मंदिर के अंदर एक बुद्ध की गोल्डन मूर्ति रखी हुई है।

एक ट्रक खड़ी हुई है जिसका गेट खुला हुआ है जो हरे रंग का है।

एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर में थ्रेसर जुड़ा हुआ है थ्रेसर हरे और पीले रंग पे है।